एक लेडीज और एक पुरुष दिखाई दे रहा है जिसके बगल से एक बड़ा सा हरा पेड़ लगा हुआ है तस्वीर में ही सामने एक व्यक्ति खड़ा है।